यहां मुझे सड़क में एक बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

और कुछ ऑटो रिक्शा और कार भी दिख रही हैं आसपास मुझे बहुत सारे लोग भी चलते हुए नजर आ रहे हैं।

और एक गाड़ी भी मुझे यहां पे खड़ी हुई नजर आ रही है।

अरे मुझे एक खंभा भी बिजली का यहां पे दिखाई दे रहा है।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

इनके पीछे तीन अ बेंच रखे हुए हैं जिनमें बलूंस रखे हैं और दीवार पे भी सुन रंग बिरंगे बैलून से सजाया गया है।

इस तस्वीर में मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है।

और एक टेम्पला कलर की टंकी नज़र आ रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक मस्जिद नज़र आ रही है जहां पे रेड और व्हाइट कलर का कॉरपेट जमीन पे बिछाया गया है।

यहा मुझे बहोत सारी लाइट्स भी जली हुई दिखाई दे रहीं हैं।

सड़क पे मुझे तीन गाड़ियां नजर आ रही है दो ब्लैक कलर है और एक व्हाइट कलर की है।

यहां पे मुझे एक गेट भी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

और कुछ गाड़ियां और बाइक भी मुझे यहां पार्किंग में नजर आ रही है तो कुछ लोग मुझे बैठे हुए साइड में दिख रहे हैं।

इसमें खाने का सामान रखा है और थोड़ा सेलिड भी रखा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर मुझे एक झंडा भी नजर आ रहा है।

साथ में मुझे एक रोड के साथ में एक मूर्ति भी नजर आ रही है यहां पे मुझे खंभा दिखाई दे रा है जिसके ऊपर तारे लगी हुई हैं।